हम देख सकते हैं कि चप्पल वाली शॉप है जहां पर हमें वैराइटीज में शूज नजर आ रहे हैं हम सामने देख सकते कि बॉक्स में शूज रखे।

आजु बाजू पूरा ग्रिनरी और हमें केले के झाड़ पापाये के झाड़ भी नजर आ रहे है इवन आम के झाड़ भी लेफ्ट साइड में हैं।

एक प्लेस है जहां बोट के थ्रू ट्रैवल किया गया है हम देख सकते हैं मंदिर नजर आ रही है पूरा ब्लू --

राइट साइड में पत्थर पूरा रखा गया है जो सामने येलो कलर का ब्रिज का बनाया गया है।

यहां हम देख सकते है की स्टार्टिंग में हमें दो साइकिल देखने मिल रही है और पीछे बहुत सारी स्कूटीज एंड बाइक है।

जहां में राइट साइड में ऊपर के साइड देख सकते हमें छोटा सा झाड़ भी देखने मिल रहा है उसके लिफ्स वगै --

सामने मेन गेट पे देख सकते है लेफ्ट लाइट में लिखा है यू आर केक कॉर्नर नीचे बाहर भी उसके नीचे --

सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्ड में केक बने और राइट साइड में हम देख सकते हैं की लाइफ के कॉर्नर सेम लिखे उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट है।

अंदर जो गए है उन्होंने व्हाइट कलर का पैने हैं और ग्रीन अ वाइट वाले अंकल के हाथ में झूला है ग्रीन --

जस्ट उसी के सामने हम देख सकते हैं एक बाइक पर दो अंकल बैठे हुए हैं उनके बाजू में फीमेल आंटी खड़ी हुई है।

जस्ट उन्हीं के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में दो स्कूटी खड़ी है एक वाइट कलर की और एक पीछे ग्रे कलर की।

ये देख सकते कि ओपन ग्राउंड है है जहां नेचर रिवर बनी गई है।

चैक नंबर थ्री जो है वह रोकड़ा मतलब कैश काम चैक नंबर फोर जो है न ओ चेक्स है।

हमें देख सकते हैं कि ए_टी_एम है ए_टी_एम मशीन जो सारी जगह अवेलेबल होती है हम एकदम टॉप पर देख सकते हैं एस_बी_आई ।

यह नृत्य डांस के रिलेटेड है। जहां पर चार लड़की ने अपने आप को ड्रेस अप किया है। रेड और डार्क ब्लू कलर के इसमें --

उन्होंने अपने हाथ में मेंहदी भी लगाई है और पैर में भी उन्होंने नकली चोटी सर के ऊपर गजरे लगा कर खुद को रेडी किया है।

देख सकते हैं कि ये मंदिर वाली प्लेस है जहां पे बहोत सारे लोग इकट्ठा हुआ है बीच में हम दे--

सेवन वन थ्री डबल फोर टू दूसरा कांटेक्ट नंबर हम देख सकते है ऐट टू डबल जीरो फोर जीरो सेवन जीरो थ्री वन --

ये एक फैमिली रॉय रेस्टोरेंट है नेम ऐज क्रैक्ड एग्स जहां पर हमें ये रेस्टोरेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स --

एक लड़का बॉल फेंक रहा है और दूसरे करने के लिए तैयारी कर रहा है आजू बाजू लोग इसलिए खड़े है फोर कैचिंग ऑफ बॉल और ये ओपन ग्राउंड स्पेस --

की लेफ्ट साइड मे हम देख सकते है राइट साइड मे की सॉरी अह येलो और व्हाइट कलर का मंडप --

पिंक कलर का बुके है जैसे उसके ऊपर रेड कलर के कॉम्बिनेशन के येलो कलर है कॉन्बिनेशन से एक बुके बनाया गया हैं चारों डोर ओपन हैं ज --

जैसे कि हम हमने देख सकते है डी_सी_ए करके बोर्ड है जहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्विपमेंट देख सकता है विच इस यूज्ड इन वाइल डूइंग दि कंस्ट्रक्शन ।

जहां पर कार को बनाया जाता है पीछे के साइड में हम एक ट्रक भी देख सकता है जो ब्ल्यू कलर में--

नीचे हम देख सकता है कि आयल का डब्बा वगैरा रखा गया जिससे हम ग्रीसिंग करते हैं कार्स के बॉर्डर वगैरा को ये कार वाला पेस प्लेस है जहां--

जो एक लेफ्ट साइड बाजू में एक राइट साइड में भी बोड है ऊपर हम देख सकते हैं कि बर्ड्स घूम रहे हैं नीचे हम देख सकते है की ग्रीन कलर में पानी अवेलेबल है।

ऊपर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लार्स को पूरा लाइटनिंग किया गया है सामने हम देख सकते हैं कि --

गणपति जी को एक अच्छी सी जगह पर सजाया गया है जहां उनको पीछे बैकग्राउंड भी दिया गया है।

और उन लोगो को गिफ्ट दिए जा रहा बाय एक मैम से जो चेयर पर बैठी गई है देख सकते की छोटी लड़की के हाथ में दे रहे हैं।

इसमें देख सकते है हम मुंद्रा फरसन करके एक स्टोर है जहां पर हमे सारे स्वीट्स वगेरह और डिफरेंट टाइप के फरसन होते हैं वो मिल सकते है।

हम देख सकते हैं कि दो अंकल भी खड़े हैं पूरी ग्रीनरी से आजू बाजू पूरा भराया हुआ है।

छोटा सा वो है जहां पर हमे चाय काफी मिल सकती है और इसका नाम है--

रोहन चाय स्टोर चाय कॉफी मतलब यहां दोनों चीज मिलती है जहां एक अंकल रेड कलर के पहने हैं पीछे एक अंकल ने जैकेट पहना है।

यहां ऊपर हम देख सकते हैं पद्मा क्लिनिक करके भी है नीचे भी हम देख सकते हैं मुफ्ती फेडरल डेंटल है।

पीछे हम देख सकते है कि एक अंकल बाइक चला के जा रहे है सामने एक रेड कलर की कार एंड प्लस ऑटो भी खड़ी हुई है।

हम देख सकते हैं वो टेबल के नीचे भी बॉक्सेस अवेलेबल है लाफ्ट साइड में एक बड़ा बॉक्स है और राइट साइड में थ्री लेयर्स --

हम देख सकते कि यहां पर एक पीकॉक है जो वॉक कर रहा है और हम देख सकते हैं की एक मैम आगे चलते हुए जा रही --

ये सुबह के टाइम के स्पेस है आजू बाजू हम देख सकते हैं ग्रासेस हैं छोटे छोटे--

इसके थ्रू पानी जाता है छोटे छोटे प्लांट्स ग्रीन कलर के येलो कलर के ग्रीन लीव्स के ऊपर लगे हुए है।

शादी का वो चल रहा है जहां पर ब्राइड को किया जा रहा है कितना क्लियर फोटो नहीं है के बाजू में ग्रूम खड़ा है।

पीछे हम देख सकते हैं कि ऊपर लाइटिंग से मंडप बना हुआ है एक लड़का खड़ा है जिसने अपने सर पे पगड़ी बहाना है।

ये एक ऐडवेंचर जैसा है जहाँ लोग ऐडवेंचरिंग करने जाते है जहाँ हम देख सकते हैं कि वो पत्थर से ऊपर चढ़ रहे हैं।